यह एक मंदिर का जगह लग रहा है ताड़ का पेड़ लग रहा है घर लाल रंग से रंगा हुआ है आगे में कोई मूर्ति बना है ।

इस सब पर स्कूल बहुत बड़ा है तार का पेड़ हैं लाइट बड़ा लगा हुआ है चार चक्का गाड़ी लगा है और ओ आदमी कुछ कचरा लेकर जा रहा है बिजली का खंबा भी है।